कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो जा रहे हैं यहां कुछ पेड़ पौधे--

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तीन अलग अलग टाइप की गाड़ी लगी हुई है।

यह एक रोड दिख रहा है जिसके--

यह एक मॉल है।

हर एक टेबल पे लोग बैठे हुए हैं।

यह एक बड़ा सा हाल है।

जिसमें एक बेंच रखा हुआ है और तीन जेंट्स बैठे हुए हैं।

यहां कुछ वायर भी दिखे रहे हैं।

यह एक दुकान है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट दिखाई--

यह एक जिम का बड़ा सा--

जीसमे अलग अलग एक्सरसाइज मशीन रखा हुआ है।

इसमें तीन विंडो दिख रही है।

एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर--